यह एक पाट्रोल पंप दिखाई दे रहा है उसके बीचो बिच एक बोर्ड गड़ा हुआ है जिसमे दो लाइट है।

में वी-टू लिखा हुआ है और नीचे में भी कुछ ऐसा ही है अंदर दो ऑफिस नजर आ रहें हैं जिसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए न --

यहाँ सामने कुछ शटरें हैं जिसमे दो शटरें बंद हैं और एक में कुछ हरा और कुछ गुलाबी और दुसरे में कुछ है| कथथाई पेंट पुता हुआ है।

एक बहुत बड़ा ट्यूबलेक्स दिखाई दे रहा है जिसके सामने में बबन की दीवाल खींची हुई हैऔर साइड में कुछ पीले कलर की मिट्टी दिख रही है।

यहाँ एक सामने एक मैदान दिख रहा है। उसके सामने एक गोल सी ऊँची बोहोत बड़ी इमारत दिख रही है जो ओ उसमें नीले कलर का आसमान भी दिख रहा है और इसी में इमारत में ब्लू का उपयोग किया गया है।

सामने में कुछ दुकान दिख रही है और एक बाइक बाहर पर खड़ी हुई है।